नमस्कार gchempaint में resonance structures के इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे
रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने के लिए भिन्न प्रकार के arrows arrows उपयोग करना और
एक परमाणु पर charge और electron युग्मों को जोड़ना
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu लिनक्स os version 1204
gchempaint version 01210
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको gchempaint के साथ परिचित होना चाहिए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
मैं gchempaint window पर जाउंगी
मैंने एक नयी gchempaint window खोली है
यहाँ आप इथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड के structures देख सकते हैं
मैं दर्शाउंगी कि carbocation को कैसे प्राप्त करें
add इथाइल chlorine के chlorine परमाणु पर electrons का एक युग्म जोड़ते हैं
add an electron pair tool पर click करें
chlorine परमाणु पर click करें और देखें क्या होता है
आगे मैं electron युग्म को carbonchlorine bond पर shift करना दर्शाउंगी
add a curved arrow to represent an electron pair move tool पर click करें
property window खुलती है
end arrow at center of new bond check box पर click करें
यह electron युग्म को सही स्थिति पर खिसकाता है
carbonchlorine bond पर click करें
curved arrow पर cursor रखें और electron shift को देखें
मैं इस structure की प्रति बनाउंगी
add add an arrow पर click करें और structures के बीच में click करें
carboकैटायन के बनने की शुरुआत sodium hydroxide naoh जैसे base द्वारा की जाती है
add or modify a group of atoms tool पर click करें arrow के ऊपर click करें
naoh type करें
selection tool पर click करें और naoh select करें
arrow पर right click करें
सबमेन्यू में एरो सलेक्ट करेंattach selection to arrow पर क्लिक करें
arrow associated शीर्षक के साथ dialog box खुलता है
role drop down में reactant select करें और close पर click करें
अब दूसरे ethyl chloride को ethyl carboकैटाइअन और chloride ions से बदलें
erazer tool पर click करें और carbonchlorine bond पर click करें
इथेन और hcl बनते हैं
जब electrons carbon से chlorine पर shift होते हैं तो carbon पर एक positive charge की वृद्धि होती है
increment the charge tool पर click करें
उस स्थिति पर click करें जहाँ से carbonchlorine bond मिटाया गया था
ethyl carbocation ch3ch2 ^+ बन गया है
chloride ion बनाने के लिए decrement the charge tool पर click करें
hcl पर click करें chloride cl ^ आयन बन गया है
अब single electron shift पर जाते हैं
अब free radicals प्राप्त करने के लिए methylbromide structure प्रयोग करें
add a curved arrow to represent a single electron move tool पर click करें
curved arrow प्राप्त करने के लिए methylbromide bond पर click करें
pencil tool थोड़ा सा bond पर shift करें दूसरा curved arrow प्राप्त करने के लिए दोबारा click करें
एक arrow bromo br की तरफ और दूसरा arrow methyl methyl ch3 की तरफ जाता है
bromo और methyl दोनों bonded किये हुए electron युग्म से एकएक electron प्राप्त करेंगे
उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक arrow जोड़ते हैं
add an arrow पर click करें methylbromide के पास display area पर click करें
free radicals की उत्पत्ति अभिक्रिया में heat heat शामिल करती है
add or modify a text tool पर click करें
arrow के ऊपर display area पर click करें
हरे box में heat type करें
selection tool पर click करें और हीट select करें
arrow पर right click करें
menu में arrow select करें और attach selection to arrow पर click करें
arrow associated शीर्षक के साथ एक dialog box खुलता है
ध्यान दें कि role drop down सूची अधिक विकल्प रखती है
role drop down में temperature select करें और
close पर click करें
अब free radicals बनायें
मैं इस structure की एक प्रतिलिपि बनाउंगी
erazer tool पर click करें और carbonbromine bond पर click करें
methane ch4 और hydrogenbromide hbr बन गए हैं
add an unpaired electron tool पर click करें
methane ch4 और hydrogenbromide hbr पर click करें
methyl ch3 और bromium br free radicals बन गए हैं
selection tool पर click करें
अभिक्रिया pathway बनाने के लिए सबसे पहले पूरी अभिक्रिया select करते हैं
अब selection पर right click करें
एक menu खुलता है
create a new reaction पर click करें
अभिक्रिया path बन गया है
अभिक्रिया pathway को देखने के लिए इसे खींचें
इसी प्रकार मैं पिछली अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया pathway बनाउंगी
अगर हम चाहें तो हम अभिक्रिया pathway को हटा भी सकते हैं
ऐसा करने के लिए अभिक्रिया पर दोबारा right click करें
destroy the reaction पर click करें
यह क्रिया अभिक्रिया pathway को हटा देगी
किसी भी एक objects को खींचें और आप देखेंगे कि ये अलगअलग चल सकते हैं
double double headed arrow प्रयोग करके हम resonance और mesomery की ओर चलते हैं
मैंने nitromethane के structures के साथ एक नयी gchempaint window खोली है
मैंने electron shifts दर्शाने के लिए structures में curved arrows और charges जोड़े थे
add एक double headed arrow जोड़ते हैं
add a double headed arrow पर click करें
nitromethanes के बीच display area पर click करें
ये दो structures nitromethane के resonance structures हैं
structures select करने के लिए ctrl + a दबाएं
selection पर right क्लिक्क करें
एक menu खुलता है
create a new mesomery relationship पर click करें
सम्बन्ध देखने के लिए इसे खींचें
यहाँ benzene के resonance structures के लिए slide है
अब retrosynthetic retrosynthetic pathway बनाना सीखते हैं
मैंने आवश्यक structures के साथ एक नयी gchempaint window खोली है
रेट्रोसिन्थेटिक pathway सभी मध्यवर्तीयों के साथ उत्पाद से शुरू होता है और अभिकारक को जाता है
इस pathway में आखिरी उत्पाद orthonitrophenol है और शुरुवाती वस्तु benzene है
add retrosynthetic pathway दर्शाने के लिए retrosynthetic arrow जोड़ें
add an arrow for a retrosynthetic step पर click करें
सारे compounds के बीच में click करें
सारे structures को select करने के लिए ctrl + a दबाएं
selection पर right click करें
एक submenu खुलता है
create a new retrosynthesis pathway पर click करें
बनाये गए pathway को देखने के लिए इसे खींचें
अब सारांशित करें कि हमने क्या सीखा
इस tutorial में हमने निम्न करना सीखा
curved arrows उपयोग करके electron shifts दर्शाना
अभिक्रिया की conditions को अभिक्रिया के arrows पर जोड़ना
अभिक्रिया arrow का उपयोग करके अभिक्रिया pathway को बनाना और मिटाना
double headed arrow उपयोग करके एक नया mesomery mesomery सम्बन्ध बनाना
retrosynthetic arrow उपयोग करके retrosynthetic pathway बनाना
एक नियत कार्य की तरह arrow properties उपयोग करके
1 butane और sodiumbromide प्राप्त करने के लिए bromoइथेन और sodium की विलायक dryether के साथ की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का pathway बनायें
2 अभिक्रिया के अणुओं पर stoichiometric stoichiometric कोअफिशन्ट जोड़ें
3 नैप्थेलीन naphthalene एन्थ्रासीन anthracene और carbonडाईऑक्साइड के resonance structures बनायें
यह अपेक्षित अभिक्रिया pathway है
ये नैप्थेलीन एन्थ्रासीन और carbonडाईऑक्साइड के resonance structures हैं
इस url पर उपलब्ध video देखें
यह spoken tutorial को सारांशित करता है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
अधिक जानकारी के लिए क्रपया contact @spokentutorial org को लिखें